और संभवतः ये एक ठंडा का समय है कुछ अ सभी कोई स्वेटर टोपी लगा करके आए हैं।

और कुछ गाडियां भी खड़ी हैं। आना जाना भी हो रहा है। लोग एकत्र हुए हैं।

ये एक खीचने वाली गाड़ी में ये कुछ बोड़े समान कुछ बोड़े में समान लाया गया हैं।

ये एक सरकारी वीर कार्यालय हैं सरकारी बाबू काम कर रहे हैं दो औरते और एक सज्जन बैठे हुए हैं।

ये य य काफी अच्छा महाराष्ट्र का जगह है। यहाँ पे भाषण कवि प्रतियोगिता कवि लोग का गोस्तीय हो रहा है।

काफी सुंदर ये दृश्य है और काफी खा केवल यहाँ पे महिलाएं और लड़कियां है जो यहाँ पे कुछ सिखती है और औरते हैं।

यह एक अ अति प्राचीन ये एक अ गार्डन है बगीचा है। एक छोटा सा टूटा हुआ एक हेलमेट फेका हुआ है।

और यहाँ पे निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

और कृष्ण लक्ष्मी भगवान का पूजन करते हुए हैं दुकानदार और काफी अच्छा ये----

मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान का है भगवान का मंदिर है।